नमस्कार जियोजेब्रा में थियोरेम्स ओन चोर्ड्स एंड आर्क्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए सक्षम होंगे Chords ओएफ सर्किल
आर्क्स ओएफ सर्किल
हम यह मानते हैं कि आपको जियोजेब्रा की प्रारंभिक प्रक्रिया का ज्ञान है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpspoken tutorialorg इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1110 जिओजेब्रा वर्जन 32470 हम निम्न जियोजेब्रा टूल्स का उपयोग करेंगे
सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस सर्कुलर सेक्टर विथ सेंटर बेटवीन त्वो पॉइंट्स सर्कुलर एआरसी विथ सेंटर बेटवीन त्वो पॉइंट्स मिडपॉइंट और परपेंडिकुलर लाइन एक नयी जियोजेब्रा विंडो खोलते हैं
दश होम मीडिया एप्स पर क्लिक करें
टाइप के नीचे एड्यूकेशन और जियोजेब्रा चुनें
एक प्रमेय का वर्णन करते हैं
वृत्त के केंद्र से जीवा पर लम्ब जीवा को द्विभाजित करता है
वृत्त के केंद्र आ से जीवा बीसी पर लम्ब इसको द्विभाजित करता है
एक प्रमेय को सिद्ध करते हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक्सेस के बजाय ग्रिड लेआउट का उपयोग करुँगी
ड्राइंग पद पर राइट क्लिक करें
ग्राफिक व्यू में एक्सेस को अनचेक करें और ग्रिड सेलेक्ट करें
अब वृत्त बनाते हैं
टूल बार से सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस टूल चुनें
ड्राइंग पैड पर बिंदु आ मार्क करें
डायलॉग बॉक्स खुलता है
त्रिज्या के लिए वैल्यू 3 टाइप करें
ओक पर किलक करें
त्रिज्या 3सीएम और केंद्र आ का एक वृत्त बनाया गया है
बिंदु आ को मूव करें और वृत्त की गतिविधि देखें
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल चुनें
वृत्त की परिधि पर बिंदु ब और सी मार्क करें
जीवा बीसी बनी है
अब जीवा बीसी पर एक लम्ब खींचते हैं जो बिंदु आ से पास होता है
टूल बार में परपेंडिकुलर लाइन टूल पर क्लिक करें
जीवा बीसी और बिंदु आ पर क्लिक करें
बिंदु ब को मूव करें और देखें कि लम्ब कैसे बिंदु ब के साथ मूव करता है
लम्ब रेखा और जीवा बीसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं
इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
प्रतिच्छेद बिंदु को डी मार्क करें
जाँचें कि क्या डी जीवा बीसी का मद्द्य बिंदु है Distanceटूल पर क्लिक करें
बिन्दुओं B डी D सी पर क्लिक करें
ध्यान दें कि दूरियां बीड और डीसी बराबर हैं
इसका अर्थ है डी बीसी का मध्य बिंदु है
अब कोण सीडीए को नापते हैं
एंगल टूल पर क्लिक करें
बिन्दुओं cडी आ पर क्लिक करें
कोण सीडीए 900 है
प्रमेय सिद्ध हुई है
अब बिंदु सी को मूव करते हैं
और देखते हैं कि कैसे दूरियां बिंदु सी के साथ मूव करती हैं
अब फाइल को सेव करते हैं
फाइलगटीजीटी सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम circle चोर्ड टाइप करती हूँ सेव पर क्लिक करें
अब अगली प्रमेय पर जाते हैं
समान चाप द्वारा बनाये गए कोण बराबर होते हैं
समान चाप बीसी द्वारा बनाये गए कोण बीडीसी और बीईसी बराबर हैं
प्रमेय को सिद्ध करते हैं
अब एक नयी जिओजेब्रा विंडो खोलते हैं फाइल जीटीजीटी न्यू पर क्लिक करें
अब एक वृत्त बनाते हैं
टूलबार से थे सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट टूल चुनें
केंद्र को बिंदु आ मार्क करें
और परिधि पर बिंदु ब और सी के लिए फिर से क्लिक करें
एक चाप बीसी बनायें
सर्कुलर एआरसी विथ सेंटर बेटवीन त्वो पॉइंट्स पर क्लिक करें
आ ब और सी को परिधि पर क्लिक करें
चाप बीसी बना है
चाप बीसी की प्रकृति को बदलते हैं
अल्जेब्रा व्यू में ऑब्जेक्ट डी पर राइट क्लिक करें
ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करें
कलर सेलेक्ट करें हरा चुने क्लोज पर क्लिक करें
न्यू पॉइंट toolपर क्लिक करें वृत्त की परिधि पर डी और ई बिंदु मार्क करें
अब चाप बीसी से बिन्दुओं डी और ई पर दो कोण बनाते हैं
पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें
बिन्दुओं ई ब डी सी और चित्र पूरा करने के लिए फिर से ई पर क्लिक करें
अब कोण बीडीसी और बीईसी को नापते हैं
एंगल टूल पर क्लिक करें
बिन्दुओं ब डी सी और ब ई सी पर किलक करें
हम देख सकते हैं कि कोण बीडीसी और बीईसी बराबर हैं
अब अगली प्रमेय का वर्णन करते हैं
एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण समान चाप पर बने कोण का दुगुना होता है
चाप बीसी द्वारा केंद्र आ पर बना कोण समान चाप पर बने कोण बीईसी और बीडीसी का दुगुना है
प्रमेय को सिद्ध करते हैं
वृत्तखंड एबीसी बनाते हैं
सर्कुलर सेक्टर विथ सेंटर बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल पर क्लिक करें
बिन्दुओंA ब सी पर क्लिक करें
वृत्तखंड एबीसी के रंग को बदलते हैं
वृत्तखंड एबीसी पर राइट क्लिक करें
ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करें
कलर में हरा रंग चुने
क्लोज पर क्लिक करें
कोण बैक को नापते हैं
एंगल टूल पर क्लिक करें
बिन्दुओं ब आ सी पर क्लिक करें
कोण बैक कोणों बीईसी और बीडीसी का दुगुना है
बिंदु सी को मूव करते हैं
ध्यान दें कोण बैक हमेशा कोणों बीईसी और बीडीसी का दुगुना होता है
अतः प्रमेय सिद्ध हुई हैं
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सिद्ध करना सीखा160 केंद्र से जीवा पर लम्ब इसको द्विभाजित करता है
समान चाप से बनाये गए कोण बराबर होते हैं
वृत्त के केंद्र का कोण समान चाप पर बने कोण का दुगुना होता है
एक नियत कार्य की तरह मैं सिद्ध करना चाहती हूँ कि बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं
एक वृत्त बनायें
सेगमेंट विथ गिवेन लेंग्थ फ्रॉम पॉइंट टूल सेलेक्ट करें
बराबर नाप की दो जीवा बनाकर इसका प्रयोग करें
केंद्र से जीवाओं पर लम्ब रेखाएं बनायें
प्रतिच्छेद बिन्दुओं को मार्क करें
लम्ब दूरियों को नापें
नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए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
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम160 स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद